जिसमें व्हाइट ब्लैक और रेड कलर भी है दो आदमी भी--

उसमे बहोत सारी मशीने लगाई हुई है।

साथ में एक कपड़ों की दुकान है।

उसके पास कुछ दो फ़रम जैसी बनी दिखाई दे रही हैं।

जो कि लोहे की बनी हुई हैं।

सामने एक सफेद कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

सामने एक दुकान नज़र आ रही है।

पर उसमें कोई खिड़ाड़ी नजर नहीं आ रहा।

उस पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं।

सामने कुछ पौधे रखे हुए हैं।

सामने एक ग्राउंड दिख रहा है।

और बहुत सारे हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

बुक्स बहोत ही सुंदर लग रही हैं।

जो की पीले और संतरे कलर का --

और कुछ लोग वहां पे खड़े भी हैं।

सामने तीन दुकाने नजर आ रही है।

एक दुकान के आगे दो ऐ_सी लगे हुएं हैं।

पीछे कोई घर नजर आ रहा है।

जिसके ऊपर गेहरा नीला रंग किया हुआ हैं।